और यहाँ पर नीचे बैठे हुए है यहाँ पे दो लोग पंडित जी बैठ कर भजन--

और यहाँ पर इच सभी दोस्तों ने होली वाली खेल रहा हो ।

यह चर्च के बाहर का फोटो है जहाँ पर काफी सारी औरते खड़ी हुई है यहाँ पर ये लोग सभी औरते खड़ी है यह चर्च गोल घुमा हुआ है फिरोजी कलर का।

प्रोजेक्ट तैयार कर रहे है ये बच्चे प्रोजेक्ट तैयार कर रहे है।

यह मछली की दुकान है यहा पर मछली मिलती है यह पर दो आदमिओ ने स्वेटर पहन रखा है।

मेडम ने उनको अपने अपने प्रोजेक्ट दे दिया है और वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर रहे है।

यह स्कूल मे ड्रॉइंग चल रही है यहा पे कुछ बच्चे अपना अपना कुछ प्रोजेक्ट तैयार कर रहे है।

और एक गाड़ी पर एक आदमी अपने बच्चों को बीठा कर ले जा रहा है वह सामने एक आंटी वह सामने एक स्प्लेंडर पे एक लड़का बैठा है।

यह सफाई कर रहा है एक दिन की--